यहाँ सामने में कोई कैबिन जैसा ओय ऑफिस जैसा जिसमें काम --

ऑरेंज कलर के पर्दो जैसे लगा के डिज़ाइन डिज़ाइन में --

पापाया है सेब है। हरे कलर का फल दिखाई दे रहा है।